पूजा का जगह लग रहा है जहाँ पे लोग पूजा कर रहे है केला चढ़ाया हुआ है फल चढाया हुआ है सूप दिख रहा है जहाँ पे औरत झुक के हाथ जोर के पूजा कर रही है कुछ औरते खड़े है बच्चे है बहोत भीड़ है।

पीछे में एक लड़का ग्रीन रंग का टी शर्ट पहना है एक आदमी ब्लू रंग का टी शर्ट पहन के कुछ एक्सरसाइज कर रहा है उसके हाथ म कुछ है जो वो खींच रहा है और एक लड़का बैठे हुए है बहोत सारे मशीन इधर उधर रखा हुआ है पीछे में भी कुछ लोग है।

ऊपर में मंदिर का बड़ा-सा आ गुम्बंद जैसा है ऊपर में लाइट जल रहा है रात का समय है।